और ये दुकान के सामने में बहोत सारा सामान है बोरा में करके किसी बोरे में चावल है किसी बारे में गेहूं हैं किसी में आटा है और यहाँ पर आलू और प्याज दिखाई दे रहे हैं बहोत सारा बोरा में करके।

यह एक चर्च है जहां पर बड़ा सा क्रूज का निशान बना हुआ है और यहां पर कोई माइक कोई स्पीकर है जो की कुछ बोल रही हैं किसी सभा को संबोधित कर रही हैं।